इस तस्वीर में मुझे बहोत सारे पेड़ पौधे की नजर आ रहे हैं।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

ये तस्वीर किसी मंदिर या गुफा की है इस तस्वीर में मुझे पत्थर भी नजर आ रहा--

इस तस्वीर में मुझे एक बोर्ड नजर आ रहा है बोर्ड पे लिखा हुआ है आलिया कैफे ।

ये तस्वीर किसी स्कूटी के शोरूम की है।

बैलून का कलर ग्रीन ऑरेंज और वाइट है।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

इस तस्वीर में मुझे बहोत सारे लोग नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में मुझे सोफा भी नजर आ रहा है।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

इस तस्वीर में मुझे बहुत सारे पेड़ पौधे भी नजर आ रहे हैं।

इस तस्वीर में मुझे स्ट्रीट लाइट भी नजर आ रहे हैं।

इस तस्वीर में मुझे एक गाड़ी नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में मुझे एक आदमी भी नजर आ रहा है आदमी ने शर्ट पहना हुआ है आदमी ने केप भी पहना हुआ है।

ये तस्वीर किसी समारोह या किसी त्योहार की है।

सभी औरतों ने सारी पहना हुआ है।

इस तस्वीर में मुझे एक गाड़ी भी नजर आ रहा है गाड़ी का कलर ब्लैक है।

इस तस्वीर में मुझे एक आदमी भी नजर आ रहा--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

इस तस्वीर में मुझे क्रॉस भी नज़र आ रहा है।

इस तस्वीर में मुझे बेंच भी नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में मुझे एक पेंडल भी नजर आ रहा है।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

यह तस्वीर किसी फूल की है फुल कटे हुए हैं।

इस तस्वीर में मुझे पहाड़ भी नजर आ रहा है।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

घर का रूफ टीना से बना हुआ--

इस तस्वीर में मुझे बहुत सारे पेड़ पौधे भी नजर आ रहे हैं।